छोटी मछली हैं बड़ी मछली हैं एक लाल रंग की दाढ़ी--

ऑफिस के अंदर एक लकड़ी का टेबल दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर कई टेबल दिखाई दे रहे हैं सभी टेबल के ऊपर एक प्लेट और एक पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक जिम दिखाई दे रही है।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

बिजली के तार के ऊपर नीले रंग का आसमान दिख रहा है।

दो बॉक्स दिखाई दे रहे बॉक्स के बीच में--

लाल किला और सफेद रंग की आइसक्रीम है।

एक हरे रंग का छोटा सा बोट दिखाई दे रहा है बोट के सामने--

स्टूडेंट के साथ एक बाइक दिखाई दे रही है एक बाइक स्पलेंडर बाइक है एक बाइक पल्सर बाइक है।

इस तस्वीर में एक बैंक के बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पार्क में एक आम का पेड़ दिखाई दे रहे हैं आम के पेड़ के बाहर एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

उसका रंग लाल रंग की आकृति हैं।

उसके ऊपर लाल रंग की पेंटिंग हो रखी है एक हर हरा सा घास का मैदान दिखाई दे रहा--

बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।